रैक ऑरेंज रंग से पेंट की गई हैं।

सामने की तरफ एक बड़ी जाली नुमा संरचना भी है।

बिल्डिंग के सामने पानी भी भरा हुआ है।

स्टेज के बगल में गणेश भगवान भी दिख रहे हैं।

बिल्डिंग के अंदर लाइटें भी जल रही हैं।

इस फोटो में नाई की दुकान दिखाई गई है।

मैदान में कुछ पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में किसी होटल का दृश्य दिखाया गया है।

होटल में सामने की तरफ रिसेप्शन है।

सामने की तरफ खाने के काउंटर दिख रहे हैं।

गेट के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है।

इस फोटो में जिम का दृश्य दिखाया गया है।

सामने की दीवार पर एक टी_वी भी लगी हुई है।

बाईं तरफ एक पेड़ भी दिखाया गया है।

दुकान को गेंदे के फूल से सजाया गया है।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

प्रत्येक चेंबर के सामने एक कुर्सी पड़ी हुई है।

अंदर की तरफ एक काउंटर भी रखा हुआ है।

इस फोटो में एक घर बनता हुआ दिखाया गया है।

तालाब के बगल में पेड़ भी लगें हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में किसी आर्ट्स कॉलेज का दृश्य दिखाया गया है।

नीचे की तरफ टाइलें लगी हुई हैं।

शोपीस के चारों तरफ मोमबत्ती जल रही है।

नदी में एक नांव भी चल रही है।

पीछे की तरफ मंदिर की चोटी भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में किसी पार्क का दृश्य दिखाया गया है।

सामने की तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी दिख रही हैं।

इस फोटो में किसी गुरुद्वारे के अंदर का चित्रण किया गया है।

इस फोटो में किसी कार गराज को दिखाया गया है।

कार के बनाने वाला सारा सामान भी जमीन पर पड़ा है।

रास्ते के दोनों तरफ पेड़ भी लगे हुए हैं।

सामने की तरफ एक मशीन दिख रही है।

बगल में एक बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है।